फ्रेंडस लगता है कोई बड़ा-सा चौराहा लगता है देख अ कितना टेम्पल है बगल में आदमी मतलब धो रहा है अउ बगल में देखिये अ रेड कलर की कार है ओ--

फ्रेंड्स लगता है कोई यहाँ पे प्रोग्राम वोग्राम हो रहा हें देखने चार पाच छे छे गाडी स सत गाड़ी यहाँ पे खडी हुई है।

ये लगता है दुकान को देख के वाशिंग मशीन देख सकते है अ वाशिंग मशीन मेक्रोमेक्स सैमसंग ये सब की कंपनियां लगती है और लाईट कितना खुबसूरत लगा हुआ हैं।

परिवार को लेकर यहाँ पे आए हुए है कितना खूबसूरत सजाया हुवा भी है आप देख सकते हैं।

और बगल मे बोलरो (बोलेरो) खडी हुई है हरे-भरे पेड-पौधे अ उगे हुवे हैं और वहाँ देखिये बहुत से यहाँ पे घर बने हुवे--

भाईसाहब लगता है प्रेस मार रहे हैं कपडे और बाजू मे गुबाडे भी अ गुबाडे फुला कार टांगे हुए हैं।

यहाँ पे चेयर लगे हुए है और उपर से लाईट अ फैन भी लगा हुवा है डोरी सरकाने वाला फैन लगा है और अ रेड कलर कलर की चेयर भी यहाँ पे तिन अ लगी हुई हैं।

पेड़-पौधे भी यहाँ पे दो दिख रहे हें और अ थोडा सा अंधेरा भी हो चूका है अ अच्छा से दिख नहीं रहा है पानी भी यहाँ पे है।

ये कोई गाड़ी लग रही है परफेक्ट लिखा हुआ है इसमे बहुत ही सुंदर अ_अ गाड़ी दिख रही है ऐसा तो एम्बुलेंस होता है।

पानीयों मे पनडुब्भी लगता है यहे बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

हमारे हिसाब से लगता है अ ढलाई हो रहा है छत ढलाई हो रहा है बहुत से आदमी यहाँ पे काम भी कर रहे हैं।